घोड़े चरते हुए दिख रहे हैं और एक बड़ा सा नीले कलर की बाउंड्री भी दिख रही है और एक हरी कलर की बाउंड्री भी दिख रही है।

और बड़ा सा हमे एक खम्भा भी दिख रहा है और कुछ झाड़ भी दिख रहे है।

सामान लगाए हुए दिख रहे है जैसे के पित्तल के बर्तन ग्लासेस है लोटा है और कुछ--

कपड़े के बर्थन भी दिख रहे है कटोरी भी दिख रहे है।

यहा पर हमे एक क्लास दिख रही है क्लास में कुछ बचे बेठे हुए दिख रहे है और वो कुछ ड्राविंग करते हुए दिख रहे है।

चार पाच छेह हमे फेन नजर आ रहे है और यहा पर एक दो तिन चार पाच छेह सात आठ लोग दिख रहे है।

यहाँ पर हमे एक बरा सा हॉल दिख रहा है हॉल में एक आदमी दिख रहा है और हमे बाहर एक--

हमे यहा पर एक दुकान दिख रही है दुकान में हमे कुछ डब्बे और कुछ रील्स टॉफी --

और रेड पिंक कलर के भी कुछ खिलोने दिख रहे है कुछ बोक्सेक्स भी दिख रहे है।

आदमी कुछ नर्सरी के झाड़ बना रहे हैं और उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट ब्लू कलर और--

कुछ आदमी दिख रही है और एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड नजर आ रहा है और एक बिल्डिंग भी दिख रही--

रहे हैं एक यहां पर कैमरामैन भी है और यहां पर एक आदमी सोफा सेट पे बैठा हुआ दी--

लगाई हुई वींडो दिख रहे है उसके सामने एक बाइक ढहरी हुई दिख--

ये साइड में हमे एक छोटी सी लाइट भी दिख रही है।

यहा एक रेड कलर की कार दिख रही है ये एक गेरिज दिख रहा है।

तिन पिलर है जिसका कलर ऑरेंज है कुछ बॉक्सेस ओपन है और एक बॉक्स बंद है जिनका कलर भी ऑरेंज है।

गेट के बाउंड्री में हमें कुछ शो के झाड़ भी दिख रहा है।

जो एक बास्केट बाल में रखा गया ऐसा दिख रहा है और कुछ मटकी वगेरा भी है।

पेट्रोल पम्प के आजू बाजु बड़ी बड़ी सी सडक है और एक कार अंदर आती हुई दिख रही है और हमे अंदर पेट्रोल पम्प--

यहाँ पर हमे एक सरक दिख रही है जो साप की सकल में दिखाई दे रही है हमे इसमें एक--

यहा पर हमे एक बड़ी सी सडक दिख रही है सडक पर हमे कुछ लोग--

डांस करती हुए दिख रहे हैं कुछ आदमी है जो ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं और कुछ औरतें हैं जो मुंह में--

यह एक फोटो स्टूडियो दिख रहा है। हमें एक दरवाजा भी दिखा जो बंद है और यहां पर एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया हुआ दिख रहा हैं।

यहा पर हमे कुछ लकडिया नजर आ रही है जो बहोत बड़ी बड़ी सी है और उनकी साइड में हमे एक ज्सीबी दिख रही है जिसका--

एक आदमी के हाथ में हेलमेटहै जो दरवाजे के तरफ मुह्ह करके ठेरा है।

कुछ और भी झार दिखाई दे रहे है जो नारियल के है लगता है ये नर्सरी है।

यहां पर हमें एक सड़क दिख रही है एक टंकी भी दिख रही है और यहां पर हमें दिख रहे है --

यहा पर हमे एक बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहे है और कुछ झाड़ भी दिख रहे है।

और पानी भी दिखाई दे रहा है जेसे की झरना है और छोटे छोटे जार उसमे पाणी में है।

और आजू बाजू हमे कुछ लोग नजर आ रहे है जो चल फिर रहे है इंजॉय कर रहे है।

और हमे बहोत सारे छोटे छोटे घर भी नजर आ रहे है।

और लोगो और उनका नाम भी दिख रहा है और एक आदमी बेठा हुआ भी दिख रहा है।

बस का कलर ग्रीन वाइट में कांबिनेशन में बनाया गया है और उसके नाम का लिखा गया है ।

उसके पीछे हमे एक दीवाल दिख रही है एक साइड में हमे कुछ और दिख रहे है जो शो के है।

यहां पर हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है एक आदमी भी हमें दिख रहा है कुछ सीढ़ियां हैं कुछ बालकनी है एक विंडो है ।

बलूंस भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ब्लैक और ब्लू रेड है और यहां पर --

सामान है एक टी_वि भी दिख रहा है और एक चपल भी दिखर ही है।

यहा पर हमे कुछ क्ले दिख रही है डिश की जिसमे चावल ककड़ी सलाद--